यह देख सकते है की यहाँ कितने आदमी आते हैं क्या लिखा हुआ है ड्रॉप जोन है।

जो पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं देखिए यहाँ पार्किंग के लिए भी जगह आ रहा है।

देखिए कई प्रकार के बैलून लगाए हुए है। मालाएं लगाई हुई है। बहुत अच्छे तरीके से स सजाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से सब बनाया गया--

जो बहुत ही बड़ा बिल्डिंग नजर में आ रहा है काफी ऊँचा भी लग रहा है यहाँ काफी आदमी आते हैं देखिए इसका कलर भी लेकिन डिसकलर हो चू --

परभावती अस अस्पताल जो गया में स्थित है। यहाँ काफी डॉक्टर्स है। काफी नर्स हैं।